हरी - हरी सब्जी दिखाई दे रही बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है बहोत सारे व्यक्ति यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए खड़े हुए दिखाई दे कुछ मकान भी बने हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा हैं।

एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है ठेर सारा पानी बहता हुआ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे पानी बहुत हि अच्छे डिज़ाइन में मिल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है ।

हरे-हरे पेड़ पोधे भी लगे हुए दे रहे है पर वो छोटी छोटी घास दबी हुई दिखाई दे रही है बहुत हि अच्छा लग रहा है।

यहां पर यह बहुत सारी जानवर रखी हो दिखाई दे रही है जोकि कुछ हिरणे दिखाई दे रही है जोकि बच्चे दिखाई दे रही है यहां पर और बहुत सारा चरने के लिए यहां पर हरी-हरी घास डाल दी गई है।

यहाँ पे भी बहुत ही ऊंचाई से पानी गिर रहा है और बहुत ही अच्छा कलर दिखाई दे रहा है बहुत ही सफ़ेद कलर मे है पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान भी नीला-नीला सा थोड़ा-थोड़ा दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा हैं यहाँ पे--

यहाँ पर भी बहोत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारे पेड़ पौधे भी लगे दिखाई दे रहे हैं और बहुत बड़ी बाउन्ड्री दिखाई दे रही है बाउन्ड्री की --

बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये बड़ा उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर--